यहाँ पर एक गाय को देखा जा रहा है।

ऊपर का ऊपर का जमीन सफेद है।

और सामने में एक नीले रंग का गड तकिया जैसा रखा हुआ है।

यह पानी बहुत गहरा लग रहा है।

कुछ लड़कों ने हाफ पैंट पहन रखी है तो कुछ ने फुल पैंट पहन रखी है।

पीछे की तरफ बहुत सारे जिम जिम करने के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए है।

और अगल-बगल में भी कुछ पोस्टर वगेरा लगाए गए है।

और ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

अगल - बगल में भी ऊ अगल - बगल में भी बहुत सारी सामाने रखी हुई है।

पर यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

यह सफ़ेद व रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही हैं ।

जो की दीवाल को जोड़ते हुए देखा जा सकता हैं ।

यहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए आए हुए हैं ।

यह देखने में बहोत ही अच्छा है।

और ऊपर की तरफ से कुछ लाइटें आती हुई दिखाई दे रही है।

अगल-बगल में बहुत सारे पाइपे अ उसके आवाज के लिए कुछ लगाया गया है।

नीचे कई ग्रीन कलर कार्पेट बिछी हुई है।

मूर्ति को चारों तरफ से एक रेलिंग से कवर किया गया है ।

ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

और नीचे से रेड कलर से पेंट किया गया है।

और सामने की तरफ एक झाड़ी भी बनी हुई दिखाई दे रही है।